माता रानी का मुंह दिखाई दे रहा है तीन माता रानी है जिनमें एक राक्षस दिखाई दे रहा है। माता रानी ने काफी सुंदर मुकुट लगाया हुआ है।

इसमें काफी सारी लाइट लगी हुई है बाउंड्री दिखाई दे रही है और बाउंड्री के अंदर काफी सारी छोटी-छोटी दुकाने दिखाई दे रही हैं और दुकान में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

जिम है जिम में वेट लिफ्ट की मशीन रखी हुई है चेस्ट की मशीन रखी हुई है और काफ़ी सारे जिम के औरगूमेंटस रखे हुए हैं।

जिम है जिम में काफी सारे आर्गुमेंट रखे हुए हैं जिम काफी बड़ी दिखाई दे रही है उसमें गुलाबी बैलून रखे हुए हैं लाल बैलून रखे हुए हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है | एक दिखाई दे रही है |